यह एक आलू का चित्र है।

सारा आलू एक कैरेट में रखा हुआ है।

ऊपर तार भी दिया हुआ है।

इस चित्र में मुझे ये फल का दुकान लगाया हुआ दिख रहा है जो कि इधर अंगूर है।

यह सड़क के किनारे इमारत का चित्र है।

बाइक है और स्कूटी है।

जंगल के बीच में पत्थर के पहाड़ों के बीच में से झरने का पानी आ रहा है।

छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं ।

इसमें सीढ़ी भी लगाई हुई है।

यहां पर काफी सारी छोटे छोटे गमलो मे झाड़ भी लगाए हुए है।

यहां बहुत पूरा टाइल्स भी लगा हुआ है।

बीच में दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए चेयर --

घर के बाहर बाइक और बुलेट रखा है खड़ी है और इधर भी कुछ गाड़ियां हैं।

यह एक मंदिर का चित्र है।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

काफी सारे झाड़ भी लगे हुए हैं।

गेट में पूरा ब्लैक कलर किया हुआ है।

स्टेशन के उधर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ भी है।

उसी तरह खंभा भी लगा हुआ है।

यहां कुछ लोग भी हैं।

दुकान में रेक में काफी सुंदर सा सजा करके सामान रखा हुआ है।

इधर ए_सी भी लगाया हुआ है।

यहां पर आईने भी लगाए हुए हैं।

यहां पर पूरा टाइल्स भी लगा हुआ है।

इस चित्र में ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इसके सड़क पर काफी सारी गाड़ियां चल रही हैं।

यहां पर इमारत में काफी सारी खिड़कियां भी दिख रही हैं।

इस चित्र में इधर सड़क है और सड़क के उधर- उधर काफी बड़े-बड़े इमारत भी है और कभी सारी गाड़ियां भी चल रही है।

बाउंड्री में बोर्ड भी लगा हुआ है और लिखा भी हुआ है।

उसके बगल में भी एक दुकान है ।

दुकान के बाहर दो बाइक भी है ।

बाइक में एक आदमी और एक बच्चा बैठा हुआ है।

उधर एक बड़ा पहाड़ का चित्र है।